यहां पर सभी लेडिस योगा के लिए--

सामने एक वाइट कलर का पोस्टर भी दीवार पर लगा हुआ है।

यहां पर इन पैसे निकालने के लिए ए_टी_एम से आए हुए है कब यहां पर ब्ल्यू कलर का है ए_टी_एम यहां पर पिंक कलर --

यहां पर ये शॉप दिखाई दे रही है साइकिलों की।

यहां पर कोई फेस्टिवल दिखाई दे रहा है। बहुत ही--

लाइट लगी हुई है यहां पर एक शीशे का गेट लगा हुआ है एक खिड़की लगी हुई है शीशे की रिसेप्शन के आगे --

यहां पर ये कुछ बड़ी सी कंपनी दिखाई दे--

यहां पर गाड़ी खराब हुई दिखाई दे रही बैलों से शायद इसका इंजन यहां पर निकाला जा रहा है।

सामने पानी का यहां पर तालाब भी दिख रहा है।

और बहुत सारी मशीनें भी दिखाई दे रही है एक कारखाना है।